यहाँ पे हिन्दुस्थान के एक राष्ट्रध्वज भी है यहाँ पर काफी बच्चे खेल रहे हैं ।

यहाँ पर अनेक तरह के कपड़े मिलते है। यहाँ पर बड़े एवं बच्चे के सभी प्रकार के कपड़े मिलते हैं।

इस गैरेज में रॉयल ऑटो सर्विस लिखा हुआ है।

ये गैराज है यह गैराज काफी बड़ा है।

यहाँ पर बेड भाड़े में मिलती है।

इस नदी में एक नाव चल रही है।

इस मंदिर को काफी सुंदर सजाया गया है।

यह सड़क पर बहुत सी गाड़ियां आती जाती है। यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है।